यहां पर एक टेम्पल दिखाई दे रहा है और कई घर दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर कई सारी मशीन्स दिखाई दे रही है।

और एक नदी का कलर रेड और सिल्वर ग्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है जिनका कलर ग्रीन और ब्लैक दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक टेम्पल दिखाई दे रहा हैं।

पेड़-पौधों का कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है कुछ जाली दिखाई दे रहीं हैं।

यहाँ पर एक नदी दिख रही है जिसका कलर सिल्वर ऑरेंज दिखाई दे रहा है।

कई सारी बाइक दिखाई दे रही हैं और कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है बहोत सारी चेयर दिखाई दे रही हैं इ हैं कुछ--

यहां पर एक सिल्वर कलर का ब्रिज दिखाई दे रहा है।